यहां पर एक कार दिख रही है। ये कार ऐसे मेरून रंग--

इस स्टैंड के पास क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ तो जरूर हो रहा है जो कि यहां ये यहां पर खड़ा है।

आप यहां पर देख सकते हैं ये जूतों की दुकान है बल्कि लेडीज के जूतों की दुकान मतलब लेडीज जूतियां चप्पल जो भी होती हैं लेडीज की।